और बहोत सारे खिड़की भी है और भी बहुत सारे लोग भी है।

उनका बुर्का का कलर ब्लैक कलर का है।

इसमें एक लड़का पिला कलर का टी_शर्ट पहन के खड़ा है और उसका पेंट का कलर ब्लैक कलर का है।

खूब सारे स्टूडेंट यूनिफॉर्म में खड़े हैं।

बहुत सारे ऊपर में प्लास्टिक की पत्तियां लगी हुई है।

उसका टी शर्ट का कलर ब्लू कलर का है और पेंट का कलर वो रेड कलर का है और यह चप्पल पहना हुआ है।

खेल रहे हैं एक औरत भी खेल रही है।

यह एक ऑफिस है और इसमें बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं।

बाहर में एक डस्टबिन रखा हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है।

इसमें बहुत रंग बिरंग के टाइल्स लगे हुए है जो की बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

यहां सारे रंग बिरंग के कुर्सी है।

एक एल_ई_डी टी_वी लगा हुआ है जो कि कुछ ना कुछ उसमें चल रहा है प्रदर्शित किया जा रहा है और भी इसमें बहुत कुछ है।

पीछे एक अह बोर्ड फिर कुछ लगा हुआ है।

ये रेड और ब्लैक कलर का एक शर्ट पहना हुआ है।

सभी पीले कलर की टोपी पहने हुए हैं।

और सभी जैकेट के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है।

बहुत सारे जेंट्स भी खड़े हैं।

यह एक दुकान है जिसमें की बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

बल्ब और होम थिएटर जैसे सामान रखा हुआ है लाइट लगी हुई है।